इसमें सामने फाउंडेशन के भी कई बॉटल्स पड़े हैं।

तलाब के ऊपर बच्चा खड़ा है।

खेत में बहुत सारे गोट्स घास को खा रही हैं।

केबिन की ब्लैक कलर की वायर प्लग के अंदर लगी हुई है।

पिलर को उठाई जा रही है।

वृक्ष हरे भरे हैं वृक्ष के पास एक झो--

पैलेस के बाहर एक आदमी कैप लगा कर खड़ा है।

यह एक मिठाई की दुकान का दृश्य है।

ट्यूबल में से पानी काफी तेज आ रहा है।

कैनिक की शॉप में कई स्क्रू --

येह स्पेयर पार्ट की शॉप है।

तालाब के पानी में कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दे रहे हैं।

इसके एजेंट का नेम गुरजात सिंह है।

कई छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

जीसके ऊपर ब्लू कलर की बेडशीट बिछाई गई है।